देख सकते हैं आप लोग ये घर का फोटो है यहाँ शटर वेटर भी लगा हुआ है और ये अंदर का फोटो है और यहाँ पर टेबुल भी एक रखा हुआ है।

और ये बहोत ही खूबसूरत है और साइड मे देख सकते हैं गाड़ी वाड़ी भी लगा हुआ है जो की बहोत ही बड़ा है और बहोत ही खूबसूरत है और इधर देख सकते हैं ये दिन का फोटो है और यहाँ पे कचरा वचरा भी दिया गया है और ये बहोत ही बढ़िया है।

देवा ये बहोत ही खुबसुरत मस्जिद है इसमे चार पाँच मीनार आठ मिनारे हैं और ये बहोत ही जबरदस्त लग रहा है देखने में और व्हाइट-व्हाइट है और इसके साइड में देख सकते हैं आप लोग उजला कलर का कुछ नजर आ रहा है।

देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पुल उल्ल है और बहोत ही बड़ा पुल है और ये देख सकते हैं घासवास भी है और ये बहोत ही खुबसूरत है और बहोत ही अच्छा है और यहाँ पे देख सकते उधर वहाँ उजला कलर का कुछ रखा हुआ है।